जो विदेशी झंडा लग रहा है लेकिन यहाँ पे बाघ का चित्र भी है जो इंडियन है।

यह एक स्टेडियम है स्टेडियम के अंदर प्लेयर्स खेल रहे हैं ।

अ जहाँ पे लिखा हुआ है मे आई हेल्प यू यहाँ पे सभी का निवारण होता है समस्या का ऊपर पंखा लगा हुआ है पंखा बहुत अच्छा दिख रहा है लाइटिंग का भी व्यवस्था है दो कस्टमर बात कर रहे है --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

जो बहुत अच्छा दृश्य है ये प्रोग्राम का बहुत अच्छा नजरिया है।

यह एक पार्क है पार्क के बीचों बीच एक रास्ता है रास्ते के दोनों साइड में नारियल का पेड़ है जो देखने में बहुत सुंदर है नारियल के पेड़ में --

यह एक खेत है किसी भी चीज का खेत हो सकता है इसके अंदर एक झोपड़ी बनाया गया है जो रखवाली के लिए है जो बाड़ी --

इसमें एक झंडा लगाने के लिए जगह बनाया गया है जो तिरंगे के निशानी से है।

जो देखने में बहुत सुंदर है।